जैसा की आप देख सकते हैं मुझे जो पीछे की दीवाल दिख रही है वो व्हाइट कलर की दिख रही है। आगे की दीवाल भी रेड कलर की दिख रही है। एक साइड में ज जोकि जालियां दिख रही है जो ब्लैक कलर की है।

जैसा की मैं इस फोटो में देख सकता हूँ पीछे मुझे एक दीवाल दिख रही है जो व्हाइट कलर की दिख रही है। दीवाल के दोनों कोने में मुझे लाल कलर दिख रही है। दीवाल पे एक वायर टंगा हुआ दिख रहा है जो रेड कलर का दिख रहा है। ग्राउन्ड पे मुझे एक --

चार बनजे बच्चियां खड़ी हुई है। चारों ने चोटिया बंधी हुई है। और चोटियों मे रिबन लगाई हुई है। जो लाल कलर की दिख रही है। उनके हाथ मे एक शीट है जो कलरफुल दिख रही है। बहुत ज्यादा ही जिसमे कलर वो जो व्हाइट येलो अ- रेड आ- स्काई ब्लू ग्रीन व्हाइट --

ये फोटो में मुझे दिख रहा है पीछे के जो दीवाल है वो मुझे व्हाइट और रेड कलर के आगे दीवाल दिख रही है। और मुझे एक दीवाल पे खिड़किया लगी हुई दिख रही है जो ब्लैक कलर की जालियों मे बहुत ही अच्छी दिख रही है। उसके पास मे जो बेंच लगी हुई दिख रही है वो ब्लू कलर मे दिख रही है। बेंच मे दो बच्चे खड़े हुए--

वो कुछ बेंच पे रखे हुए समान कुछ हाथ लगा रहे है जिन्होंने ब्लैक ड्रेस पहनी हुई एक ने व्हाइट एक ने ब्लू एक ने डार्क ब्लू एक ने पिंक --

जैसा की आप फोटो में देख सकते हैं मुझे यहाँ पर बहुत सारी भीड़ दिख रही हैं मेला लगा हुआ है| मेला का जो गेट बना हुआ है जो पीछे की दीवार मुझे लाल और नीले कलर की दिख रही हैं आगे एक गेट बना हैं जो पीला कलर का दिख रहा है| पीला कलर का एक बोर्ड दिख रहा है बोर्ड पर जो वाइट कलर के अक्षर--

अ बहोत सारे बच्चियाँ बैठी हुई है जो अ- नीली कलर की टी शर्ट मे बैठी हुई। उनके जो टी शर्ट है उसके ऊपर व्हाइट कलर के अक्षर में कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। उसके साथ-साथ मुझे रेड चेक्स मे भी बच्चियाँ दिख रही है जो रंगोली बना रही है और जो रंगोली में कलर है वो जो लाल नीला पर्पल व्हाइट और हरा कलर ।

ये जो गेट के पास जो मुझे बेंच रखी हुई दिख रही है वो लाइन से लगी हुई है जो ब्लू कलर की बहुत ही अच्छी दिख रही बेंच के ऊपर जो पेपर रखे हुए है जो व्हाइट और ब्लू और येलो और पिंक कलर के दिख रहे हैं उसके पास जो बच्चे बैठे हुए हैं वो ब्लू कलर की टीशर्ट में बैठे हुए हैं। कुछ बच्चे खड़े---

देख सकता हूँ यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड मे एक पर्दा दिख रहा है। पर्दा जो है गुलाबी कलर का और व्हाइट कलर का दिख रहा है। ऊपर का मुझे नीला और रेड कलर का पर्दा दिख रहा है। मुझे --